यह कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं | बहुत अच्छी शिक्षा इस कॉलेज से मिल --

यह नया बजार लखीसराय में है ।

यहाँ पे जेंट्स के कपड़े मिलते हैं।

यहाँ पे शादी समारोह का फंक्शन है वरमाला हो रही है।

बहुत सारे लेबर मिस्त्री काम करने में लगे हुए हैं |

बहुत सारे आदमी उतर के फोटो खीच रहे है ।

यहाँ पे अच्छे दाम पे सामान गाड़ी सब मिलती है |